ये ग्राउंड ढला है ये बहुत ही बड़ा ग्राउंड है और इसमें --

और वो सारे पेड़ हैं पेड़ ग्रीन कलर के है और मकान के --

जे एक गार्डन है और इसमें बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं और जे ए --

पास ही में पेड़ हैं पेड़ बहुत सारे हैं ग्रीन कलर के पेड़ हैं।

जहाँ पर ये एक आदमी खड़ा हुआ है और ये --

इसकी बॉउंड्री खींची हुई है और ये पास में डी.पी. रखी हुई है।

इंसान खड़ा हुआ है उसको देख रहा है।

गेट ब्लैक कलर का पोता हुआ है।

और जे पास में एक बोहोत ही बड़ी मकान बना हुआ है। मकान काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर --